यहाँ बहुत सारे मूर्तियां बनी है यहाँ बहुत सारे मूर्ति है सुंदर -सुंदर मूर्ति है यहाँ बहुत औरते बैठी हुई है यहाँ पूजा हो रहा है पंडित भी है।

यहाँ बोहोत सारे बड़े- बड़े पेड़ है बोहोत ही हरे-भरे है यहाँ कुछ घासे भी है इस नदी के बगल में बोहोत से--

बोहोत सारे पाइपे छत मैं बिछाई गई है ब और भी बोहोत सारे बड़े - बड़े बिल्डिंगे हैं बोहोत हरे - भरे घासे हैं बड़े - बड़े पेड़ है।

यहाँ बहुत सारे प्याद पेड़ है बहुत ही बड़ा जिसका बहुत सारे आदमी बैठे है एक सुंदर सा रोड है जहाँ बहुत सारी गाड़ियां रखी गई है।